बिल्डिंग का खिड़कियां और दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

आसपास बहोत सारे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

शीशे पर पुश लिखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में चश्मा का दुकान दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर टी_वी सिग्नल का बोर्ड लगा हुआ है।

और बहुत सारे फूल के माला भी लटकाया हुआ है।

सामने मे गुलाबी रंग और सफेद रंग का गुब्बारा भी लटका हुआ है।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

टेबल पर सफेद बोतल और दो बाउल भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

और सीमेंट का बैग भी पड़ा हुआ है।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

नदी के उस पार बहोत सारे--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

मुझे इस तस्वीर में सब्जी का स्टॉल दिखाई दे रहा है।

दीवार पर बहुत सारे भगवान के तस्वीर भी दिखाई दे रहा है।

सामने में बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।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

बिल्डिंग के अंदर बहोत सारी कुर्सियां और टेबल भी दिखाई दे रहा है।